यहाँ पर हम देख रहे है की इस रूम की खुदाई हो रही है इस रूम में पहले जितने भी कुछ थे वो सब साफ करके इसमें मार्बल बैठाने के तैयारी की जा रही है।

इस मीनार के किनारे किनारे काई जम गई है और यह मीनार को फिर से सही करना चाहिए क्यूंकि यह देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब पुराना हो चुका है।

यह एक पार्क है और इस पार्क में काफी सारे झूले मौजूद है यह पार्क काफी बड़ा लगता है और यहाँ बहुत सारे बच्चे शाम को आ के खेलते हैं पर अभी ये पार्क खली है क्योंकी यहाँ पर अभी --

यहाँ पर हम देख सकते हैं की यहाँ पर एक थेरेपिस्ट एक आदमी को थेरेपी दे रहा है यह थेरेपी बहोत ही आरामदायक होता है अगर किसी के शरीर में कोई भी पेन हो कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो वो ये थेरेपी लेकर ठीक हो सकता है इससे शरीर --